जैसा कि मैं देख रहे यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है जो कि बहती हुई जा रही है यहाँ पर पत्थर कि पहाड़ दिखाई दे रहे हैं नीचे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहुत सारे पत्थर डले हुए है और पीछे भी बहुत सारे पत्थर जैसे डिज़ाइन रखी हुई है ।